मुझे इस फोटो मे एक आदमी दिखाई दे रहा है।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

पीले कलर की चादर दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में बहोत सारे पक्षी दिखाई--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

मुझे इस फोटो में एक टीचर दिखाई दे रहा है।